ये सारे प्लेयर्स कोट --

ये कार का आगे का--

ढक्कन खोला हुआ है।

सामने काफी बड़े सोफास पड़े हैं।

फिफ्टी टन लिखा हुआ--

ये एक डॉगी बैठा है।

सामने एक पोड़ी भी--